मोनाको वगैरा रखे है ऊपर कुछ क्रीम वाले बिस्किट्स रखे हुए है नीचे स्टूल जैसा पड़ा है जो खाली है।

एक रेड कलर की बस जा रही है। जिसपे एक येल्लो कलर का एक पट्टा बना हुआ है। सामने दो आदमी स्कुटी जाते हुए दिख रहे है। रोड दिख रहा है।

मुझे एक गेट दिख रहा है गेट के अंदर बहुत सारी खाली सी जगह है वहाँ पे एक बोरी रखी हुई है बोरी के जस्ट ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है जिसका बार्डर --

मुझे एक सुपर मार्केट दिख रहा है जिसकी ऊपर एक बोर्ड लगा है जिसमे लिखा है साई सुपर मार्केट बहुत सारे आदमी दिख रहे है जो अंदर की तरफ जा रहे है एक लाइट लगा हुआ है बाहर कुछ गाड़ीया खड़ी हुई है कुछ आदमी बैठे हुए है तो कुछ अंदर की और जा--

बहुत सारी खिलौने टाइप के रखे हुए है सामने डोर मेट लगा हुआ है एक मूर्ति दिख रही है स्वामी विवेकानंद की नीचे घड़ी वड़ी दिख रही है और सामने खिड़की दिख रही है।

मुझे एक खेत दिख रहा है।

मुझे मध्य रेल मुझे मध्य रेल कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक का बोर्ड दिख रहा है अंदर जाने का रास्ता दिख रहा है।

ज्यादा तर मिट्टी दिख रही है कुछ व्हाइट कलर का पड़ा हुआ दिख रहा है कुछ दूरी पर एक खिड़की दिख रही है।